यहां पर एक मंदिर है यहां बहुत सारे लोग आए हैं यहां पे एक आदमी फोन पे बात कर रहा है अगल बगल में बहुत पहाड़--

यहां बहोत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें जिम का समान रखा हुआ है और यहां एक पोस्टर भी है जहां खाने का समान का फोटो है यहां पे पीछे में एगो --

यह किसी का घर है और यह घर काफी देखने में सुंदर है यहां पे बहुत सारे फूल रखे हुए हैं।

बगल में राखी का सामान रखा हुआ है और औरतों का सजने संवरने का सामान रखा हुआ है।

और यहां पे एक गेट है नीचे में हल्की फुल्की बारिश पड़ी है और यहां पे एक लोहा है।

और पंखे के बगल में लाइट लगी हुई है और वहां स्माइल वाला बॉल रखा हुआ है और पीछे दीवार--

थाली में थोड़ा खाना है और बगल में गिलास है और ऊपर में लाइटें ल--

नीचे में टेबल है और बगल में एक शीशा है और--